यहां एक व्यक्ति है जो अपने बॉडी पर टैटू बनवा कर रखा है।

लेक मे कुछ व्यक्ति है जो मतलब तैर रहे है नाव पर और आसपास में बहुत सारे पौधे है।

लोग अपना सेल्फी भी ले रहे हैं और कुछ नाव लगे हुए हैं जो इस --

से चार दिवारी है और चार दिवारी के आस-पास में कुछ छिटके दिखाई दे रहा है जो रंगों का छिटका गया है ।